ये एक ढोसे और चटनी की फोटो नजर आ रही है।

चटनी ग्रीन कलर की है और डोसा व्हाइट कलर और ब्राउन कलर का नजर आ रहा।

पीछे दो ग्लास रखे हुए हैं टेबल ब्राउन कलर की है।

बाइक मैकेनिक अपनी बाइक रिपेयर करता हुआ नजर आ रहा है बाइक ।

पार्किंग में दो वेगन आर एक वेगन आर और एक इको खड़ी हुई है।

एक डी_जे नजर आ रहा है और एक आदमी नजर आ रहा है जो माइक टेस्ट कर रहा है।

ये लापिनोज पिज़्ज़ा और बेल्जियन वफ्फ की फोटो नजर आ रही है।

क्रीम कलर का है उधर डिलीवरी वाले की बाइक भी नजर आ रही --

है वो व्हाइट कलर की है और ऊपर जाती हुई सीढ़ियां नजर आ रही हैं।

ये मानसरोवर स्टेशनरी की फोटो नजर आ रही है मानसरोवर स्टेशनरी --

पीछे एक ईट की दीवाल नजर आ रही है।

रेफ्रिजरेटर में कोको कोला की फोटो नजर आ रही है।

बहोत सारी टेबल नजर आ रही है टेबल व्हाइट कलर की है।

झरने से पानी नीचे बहता हुआ नजर आ रहा है जो वाइट कलर का है।

कैफे एंड लॉन्ज इधर बहोत सारी चीजे नजर आ रही है जैसे की टेबल काली कलर की इसकी कुर्सियां भी काली है।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

पत्थर ब्राउन कलर के हैं पेड़ ग्रीन कलर का है।

डैम में बहोत भरा पानी नजर आ रहा है जो गिर रहा है।

ये एक रॉयल चाइनीज लॉरी वाले की फोटो नजर आ रही है।

आसमान नीला और सांफ है एक हाईटेंशन वायर दिख रहा है।

उसके पास में एक रेड कलर की दीवार खड़ी हुई है।

ये एक आई_टी_आई भिलाड़ का फोटो नजर आ रहा है आई_टी_आई भिलाड़ भिलाड़ में है।

यह एक फुटबॉल ग्राउंड की फोटो है फुटबॉल का कोई पोस्ट दिख रहा है।

बच्चों के बैग दिख रहे हैं बहोत सारे बच्चे खड़े हुए हैं।

रास्ता बहुत साफ नजर आ रहा है आसपास बहोत कचरा नजर आ रहा है फेंसिंग नजर आ रही है।

ये एक जनरल स्टोर की फोटो नजर आ रही है जनरल स्टोर में--

ये बहोत सारे मेटल पार्ट्स की फोटो नजर आ रही है।

नीचे की धरती सॉइल वो ब्राऊन कलर की है।

ये एक फोन की दुकान का फोटो नजर आ रहा है बहुत सारे --

नदी का पानी ब्राउन हो चुका है नदी इतनी गहरी नजर नही आ रही--